देखिए ये अलमारी में क्या-क्या सामान रखा हुआ है। तीन कलर का फुटबॉल रखा हुआ है।

यहाँ देखिए यह अल्लाह का दरगाह लग रहा है आ रोड के सामने सीधे सा नज़र आ रहा है और रोड के साइड साइड हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहा है ।

पर देखिए बड़ी मछली छोटी मछली सब प्रकार का मछली है।